यह एक टेलीकॉम है ऑनलाइन सेंटर और यहाँ पे पैन कार्ड वोटर कार्ड जाती अवासी ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाता है और यहाँ पे लोग आते है ज़ेरॉक्स करने।

और यहाँ बहुत अच्छे शिक्षक है जो कि स्टूडेंटों को अच्छे से पढ़ाते हैं उन्हें कंपटीशन की तैयारी कराते हैं।

ये एक गाड़ी है मैजिक गाड़ी मालगाड़ी और इसमे बहोत सारे समानों को ले जाया जाता है और इसमे बहुत ज्यादे माइलेज दिया जाता है और इसमे सामान ले जाने मे बहुत ही सुविधा होता है| जिसके कारण लोग ये गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं।

लोग आते हैं पढ़ने यहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहां पे बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक है जो की स्टूडेंटों को अच्छे से पढ़ते हैं और उन्हें --

जमा करने आते है और यहाँ बड़ी आसानी से लोग खाते खुला सकते है।

लोग दूर-दूर से आते हैं भगवान की पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से और प्रार्थना करते है यहाँ पे पुजारी होते है जो कि --

यह एक रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन हमारे --